फूल रखे हुए हैं और माला टंगी हुई है।

और यहां पर काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने नीली और खाकी कलर की ड्रेस पहनी है।

यहां पर छोटे बड़े आलू पड़े हुए हैं।

और इस प्लेन का कलर व्हाइट है और रेड है।

कुछ कपड़े बाहर टंगे हुए हैं।

जिम करने का काफी सारा सामान और मशीन रखी हुई है।

यह मूर्ति राधा कृष्ण जी की है।

बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक फंक्शन हो रहा है।

और इस नदी में काफी सारा पानी भी है।

ये एक जिम है और यहां पर--

यहां पर डब्लू ई एल सी ओ जैसे प्रकार के पेड़ बनाए गए है।

यहां पर काफी सारी मशीन रखी हुई है।

यह एक टाइल्स शॉप है।